आसमान का कलर बैंगनी ब्लू व्हाइट ब्लैक है। नीचे एक पक्के का रोड है जिसमें कुछ घास और एक साइड में थोड़ा सी पानी दिख रही है।

साइड में बहुत सारे गेंदे फूल के गछ है जो येलो कलर के फूल है कुछ रेड कलर के भी फूल है साइड में एक बड़ा सा घर दिख रहा है जो व्हाइट कलर का है और उस साइड में घर दिख रहा है पिंक --

गोल्डन कलर की मूर्ति बनी हुई है जिसने पैर हाथ दोनों एकठे आसन जमा कर बैठा हुआ है।

सब पक्के का मकान है जिसके ऊपर एक मूर्ति हाथ उठाये खड़ी हुई है ऊपर आसमान काला है दोनों साइड घर के बोहत बड़े-बड़े पेड़ है जो सा है।

इस साइड में एक बाइक रखा हुआ है रेड एंड ब्लैक कलर का जिसमे एक बच्ची खड़ी हुई है जिसने येलो कलर का ड्रेस पहना है ऊपर आसमान वाइट है।

बड़ा-सा नदी है जो ग्रीन कलर का दिख रहा है उसके एक साइड में बहुत सारी गाछे लगी है एक पक्के का मकान सा दिख रहा है दूर मे भी एक व्हाइट कलर मकान दिख रहा है।